आसपास बड़े-बड़े परदे लगे हुए हैं। पर्दों पे रंग बिरंगे --

एक टेंक रखा हुआ है। टेंक नीले रंग का है। एक नली है। नली सफ़ेद रंग की हैं। नली के अंदर --

लोग हैं। पट्टिया बनी हुई है। ऊपर जीने लगे हुए हैं। आस पास खम्बे --

पैकेट के नीचे कुछ बडे से बॉक्स रखे हुए हैं।

अंदर छोटी-छोटी घास है। रेल की पटरी बनी हुई है।

यहाँ पे एक बडी शी दुकान है। दुकान में कपबोअर्ड बने हुए हैं। कपबोअर्ड में --

यहाँ पे एक स्टेज बना हुआ है। स्टेज पे नीचे फर्श बिछा हुआ है। दो लड़कियां हैं। दो लड़के हैं।

यहाँ पे एक लड़का है लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ है उसके हाथ में फ़ोन है।

यहाँ पे एक कुर्सी रखी हुई है कुर्सी के आगे टेबल रखी हुई है टेबल पे --

आगे टेबल रखे हुई है टेबलों में पे पर --